यहां पिक्चर में एक खुला जगह दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत सारा ग़छी और छोटा छोटा जंगल ग्रीन से दिखाई दे रहा है।

आस पास में बहोत बड़ा बड़ा गच्छे लोग भी दिखाई दे रहा है।

एकाएक दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है।

यहां पीछे में बहोत सारे इंसान का ढेर दिखा दे रहा है।

यह पिक्चर में बेकरी शॉप दिखाई दे रहा है जहां में बर्गर बनाते हुए दिखाएं मिल रहा है।

घर के अंदर में चेयर और बहुत सारा सामान लोग भी रख के दिखाई दे रहा है।

लाइट भी जल के दिखाई मिल रहा है।

ऊपर आसमान भी साफ नजर आ रहा है।

बाहर में कार्टून बॉक्स और टी_वी का डिश भी रखा हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का बाहर दिखाई दे रहा है जहां एंट्रेंस में ग्लास लगाया हुआ है।

जिम अंदर बहुत सारा एक्सरसाइज मेचुरन रखा हुआ है।

इस पिक्चर में एम एस एल टी एंटरप्राइजेज लिख के एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

पीछे में जंगल लोग भी दिखाई दे रहा है।

के ऊपर में इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई मिल रहा है।

यह पिक्चर में मेला दिखाई दे रहा है जहां में बहोत सारा--

डैम में बहोत सारा पानी फ्लो और जमा होते हुए दिखाई दे रहा है।

सामने मे एक राउंड से पानी भी जमा करके रखा हुआ है।

यहां पिक्चर में रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं।